फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है।

लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं एक ऑटो दिखाई दे रहा हैं कुछ दुकानों के बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

दो चाय के कप दिखाई दे रहे है कुछ खाने की सामग्री दिखाई दे रही है कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो नीले कलर की है दीवारों का कलर लाल है।

इस फोटो में हमें कुछ व्यक्ति कुछ बर्तन टेबल कुछ सब्जियां--

इस फोटो में हमे ताड़ के वृक्ष हरियाली कुछ व्यक्ति कुछ कुर्सियां कुछ पेड़ पौधे कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है।